बाहर गेट के पास दो पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं और छोटे-छोटे गमले दिख रहे हैं जो बाहर गेट के रखे हुए हैं उस पर छोटे-छोटे पौधे लगे--